ये जैसे जंगल है खें और ये घूमने के हिसाब से लड़के लोग आए हैं यहां पर ये तो पांच लड़के अंदर जा रहे हैं।